यहा पर काफी सुन्दरसे पेड़ और पौधों की कटिंग करी गई है जहाँ पर हर खाचे में अलग-अलग तरह के पेड़पौधे लगे हुए है।

लगे हुए है यहाँ पे काफी फुल के भी पेड नजर आ रहे है लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ सोफ़ाभी रखे गए है कुछ प-पे प्लांट्स भी लगाए गए है।

यह काफी सारे काचे बने हुए है। जहा काफी सारी खुर्सिया भी लगाई गई है।

जोकि काफी अलग-अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं जो अपने स अपने शेल्फ पे रखे गए हैं।

ऊपर सफ़ेद आसमान भी दिखाई दे रहा है यहां पर काफी बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।

सामने कॅलेन्डर नजर आ रहा है और आसपास कुछ लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे--

स्टिल के रॉड से बॅरीगेटस भी बने हुए है नीचे छोटि घास भी लगी हुई है।

यहाँ पर काफी बड़ी इमारत नजर आ रही है। जिसपे हरा कलर दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान भी --

यहाँ काफी रेत नजर आ रही है रेत मे कुछ पौधे पेढ और फूलवाले पेढ भी नजर आ रहे है यहाँ एक लड़का पेढों मे पानी डालता हुआ दिखाई दे रहां है।

का अंधरे मे लाइट चमक रही है आसपास घास और बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।

कुछ सिडिया ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है कुछ ए_सी लाइट्स और काफी कुछ सामान नज़र आ रहा है।